बोए गए हैं और यहां पे एक लड़का अपने हाथ में चाय का कप फोटो खींच रहा है।

और यहां पे ग्रीन कलर की टंकी रखी हुई है पानी की।

ओम श्री गणेशाय नमः अनमोल बिस्कुट बेकरी लिखा हुआ है यहां पे बहुत सारे बिस्कुट रखे हुए हैं इनको कांच--

व्हाइट कलर का पेंट किया गया है और यहां पर एक पार्क भी बनाया गया है जिस पर छोटे छोटे पेड़ पौधे बोए गए हैं।

बना हुआ है और यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी उगे--

कुछ लड़के यहां पे बैठकर देख रहे हैं और सामने बहोत सारे बिल्डिंग बनी हुई हैं।

और बाहर भी बहोत सारी लाइटे लगाई गई--

खाना रखा हुआ है यहां पे एक आदमी खड़ा हो कर इन्हें खाना दे रहा है।

और यहां पे कुर्सी रखी गई है मैम के बैठने के लिए यहां पे गमला भी रखा गया है यहां पे--

करवा रहा है यहां पे एक लाईट भी लगी हुई है यहां पे ए_सी भी लगा हुआ यहां पे बहोत सारे बच्चे पढाई कर रहे हैं।

यह एक बेकरी की तस्वीर है यहां पे बोह दो केक रखे हुए है जिसपे फूलो का डिजाइन बनाया गया है यहां पे --

यहां पे बहुत सारे केक रखे हैं यहां पे आइसक्रीम भी रखी हुई हैं और यहां पे --

पहाड़ भी है जहां पे पेड़ पौधे उग रहे हैं।

पानी का कैंपर और भी बहुत सारी चीजे रखी हुई है। यहां पे लाइटे भी लगाई गई है। यहां पे डब्बे भी रखें हुए हैं।